मकान के चारो तरफ हरे भरे पेड़ हैं।

सभी लोग मुस्लिम समुदाय के हैं।

यह दुकान एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है दुकान का नाम यादव मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है।

दुकान के बाहर एक बिजली मीटर लगा हुआ है।

नीचे फ्लोर का कलर ब्लू है।

लाल फूल रख लगे हुए है। रस्ते के दोनों तरफ मकान है।

यह एक स्विमिंग पूल की फोटो है जिसमें स्लाइडिंग लगे रखे लगा रखे हैं।

तीन पानी के टैंक रखे हुए हैं वहां एक पान व्यक्ति पानी पी रहा है।

यह एक पिकनिक की जगह है जहां दो कपल्स बैठे बैठ के तस्वीर खींचा रहे हैं।

यह किसी कैफे वगैरह की फोटो है जिस पे एक सोफा लगा हुआ है।

तीन लेडीज भी खड़ी हुई है तथा एक छोटा बच्चा अपने उस से भी छोटे बच्चें को गोदी में ले रखा है।

एक व्यक्ति हेलमेट ले के आ रहा है और एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर आ रहा है।

कुछ लोग अपनी दुकानदारी कर रहे हैं कुछ लोग कुछ खाने का सामान बेच रहे हैं कुछ खिलौने बेच रहे हैं तथा कुछ बच्चों को खिला रहे हैं।

यह एक शा यहां एक शादी हो रही है।